उस छत का शटरिंग किय गया है और घर बनाना अभी --

रूट की काफी लग्जरी बस चलाई जाती है।

और हम सभी का कर्त्तव्य होता है ऐसी जगह को साफ-सुथरा रखें।